कुर्सी भी दिखाई दे रहा एक पुतला भी दिखाई दे रहा है।

और सामने आसमान नीला कलर का है।

यह एक शादी का स्टेज का चित्र है।

इसके सामने एक बड़ा सा विशाल पेड़ है।

इसमें दो बच्चा लोग रिब्बन लेकर खड़े है और एक महिला रिब्बन को काट रही है।

बहुत सारे सीमेंट रखा हुआ है।

यह एक किराना स्टोर का दुकान का चित्र है।

एक पुल है बहुत बड़ा सा।

यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

इस घर के सामने तीन सरकारी बोलोरो खड़े हैं और बहोत सारे व्यक्ति हैं।

यह एक पार्क का चित्र है।

बगल में एक और दुकान है।

यह एक दुकान का चित्र है।

इसके बगल में एक सड़क दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति है जो वाइट कलर का मास्क लगाया हैं।

इस हॉस्पिटल के गेट पर एक बोर्ड टंगा हुआ है जिस पर फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ है जो नीला कलर का सफेद कलर का है।

व्हाइट कलर का पेंट किया गया है।

बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे महिला भी हैं।

अगल बगल बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

अंदर में बहोत सारी लाइट दिखाई दे रहे।

और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति है जो दवाई दे रहा है।

बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इसमें बहोत सारे सामान रखे गए हैं।

और अगल बगल बहोत सारे रूम है।